इस कमरे के अंदर तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इसके अंदर बहुत सारी किताबें रखी हैं।

जहां पर कुछ लोग जिम कर रहे है।

जिस नौका के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं।

यह एक रात का अंधेरा है और इसके अंदर बोहोत सारी मामबत्तियां लगी हैं।

के अंदर बहुत सारे व्यक्ति व महिलाएं बैठी हुई हैं।

और एक मेज भी रखी हुई है और दीवार पर दो पंखे भी लगे हुए हैं।

और छत में बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

और बाहर एक गेट है जो कि शीशे का लगा बना हुआ है।

जो कि बहुत सुंदर लग रहा है।